उस बहोत सारे पक्षी है जो समुद्र के--

इनके ऑनर हैं ये गुलाबी कलर का घर है पुराना बिल्डिंग है फुल लगी है नया ओपन हुआ है ये।

यह मुझे घर की बालकनी दिख रही है जो दो दो मंजिल तीन मंजिल है।

और बाथरूम सीट मिलता है यहां पे टॉयलेट है बेसिन है चेयर है टाइल्स है ये बहोत बड़ा एक शा--

जो जिसके दीवाल पे शहीदों की ग्रेट लीडर की फोटो लगी है।

शाबर एक जैसा शाबर एक जैसा नल--

यह एक छत से लिया गया खूब अच्छा नजारा है।

फोटो दिखाई दे रही है गेट के जस्ट सामने उसके आगे पोस्टर लगा है।

यहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें दो बाइक दिख रहे हैं एक पे दो बंदे बैठे हैं दो लड़के और आस पास पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसमें एक डमी रखा है लड़का का डमी वो रेड कलर का टी शर्ट पेना है और जींस पेना है पीछे लड़कियों का फ्रॉक छोटे बच्चों का फ्रॉक रखे हैं और --